यहां पे तीन चार आदमी नजर आ रहे हैं गेट हैं दुकान है।

दीवाल पे कलर किया हुआ है उ ईटा कलर का है रेड और भूरा कलर का है।

रेलवे लाइन भी है ट्रेन चल रही है ट्रेन का मूह भी है।

यह एक मेडिकल है जो बॉक्स बना हुआ हैं उसमें ढेर सारे मेडिसिन हैं।

एक गार्ड बैठे हुए कुर्सी पे ग्रीन कलर का टीशर्ट पहने आदमी है एक भैया है जो आ रहे है स्कूटी से।

और प्लाई का घ एक ओ खड़ा है प्लाई का सामान प्लाई का गेट है या फिर दरवाजा हो सकता कुछ भी प्लाई का--

जो शॉप हैं बाहर में ऑडिया लिखा हुआ हैं फोर जी ।

एक बच्चा है जो पानी पटा रहा है फूल स में यहा पे बहुत सुंदर सुंदर फूल है जो भी बगल मे है।

तराजू है तोलाने के लिए बिस्किट वगैरा कुरकुरे है पुड़िया वगैरा तंबाकू जिसको कह सकते हैं।

इधर यहां पे बनने और टी ट्रींस होने के लिए मशीन है।

ऊपर में बहुत सारे क्ला कांच के बोतल है फैन है।

एक भव्य मेला टाइप से है जहां पर बहोत सारे आदमी लोग हैं।

डेकोरेशन भी किया हुआ है पेड़ है आसपास नीचे पानी है बगल में लड़कियां खड़ी है बच्ची लोग।

छोटे छोटे मंदिर भी हैं आस पास गेट हैं जाने का।

नीचे एक बाइक है एक साइकिल है आस पास सीढ़ी है जाने के अंदर में भी आदमी नजर आ रहा है।